और कुछ लोग बैठे हैं जो डिनर करने के लिए आए होंगे और ए_सी की फुल सुविधा मौजूद एकदम फील --

जिससे की पेड़ को हानि न पहुंचे और इस बिल्डिंग का कलर वाइट कलर है।

और ये रोड टाइप में यहां वॉक करने के लिए--

यह किसी कार्यालय की फोटोस हैं।

और कपड़े सुव्यवस्थित एकदम जमे हुए हैं।

देन अगेन एक और घर बन रहा है जे--

यह एक छोटी सी नदी का व्यू है।

शायद प्रमोशन किया जा रहा है और बहोत सारा सामान है।